पेट्रोल पंप पे तीन लोग खड़े हुए हैं।

एक भैया जी रेड कलर की टी शर्ट पहन के जा रहे हैं।

पीछे दो बस खड़ी हुई हैं।

पीछे आइडिया लिखा हुआ है।

पीछे जमीन में डिब्बे रखे हुए--

यह एक शॉप है जिस में तीन लोग खड़े हुए--

ये लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी का परफॉर्मेंस चल रहा है।

एक वाइट कलर का पहने है।

इसमें ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

स्टेशनरी शॉप है फिर एक भैया जी बैठे हुए हैं मोबाइल चला रहे हैं।

पीछे साइड घना सा जंगल है।

एक भैया जी बैठे हुए हैं।

ये आलमबाग बस स्टैंड है।

एक मरकरी लगी हुई है।

जिसमें बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।